अउ पानी बहत हावे झरना में--

ऑउर पूजा कर के भगवान मनोकन हर इच्छा ला पूज थे सबका आदमी मन का अउ मनुष्या मन --